बहोत सारे आदमी खड़े दिखाई दे रे हैं।

लग रहा है और बहुत सारे बैग भी रखे हुए हैं।

बहोत अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है।

ये दो मोटरसाइकिल भी खड़ी हैं।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--

येह बोहत बड़ी कंपनी दिखाई दे री है।

और एक कमरा भी बना दिखाई दे रहा है।

बहोत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं।

यह पूजा पाठ का कमरा लग रहा है।

इसमें बहुत सारी तस्वीर रखी हुई है।